यह दुकान है जिसमें बहुत सारी चूड़ियां हैं और कंघी है और --

यह एक अस्पताल है जिसके सामने एक एक कार लगी हुई है और इसके आमने-सामने बहुत सारे बाइक हैं। अस्पताल अस्पताल से दो आदमी बाहर निकल रहें हैं और इसके आमने-सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं।